इस फोटो में मुझे कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे --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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा रूम दिखाई दे रहा है।

और दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे कुछ दुकानों की शटर बंद दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारी रंग-बिरंगी लाइटें दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे कुछ लड़कियां नाचते हुए दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे रंग बिरंगे पर्दे दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी गिट्टी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक सड़क दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे साड़ियां दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ी अलमारी दिख--

इस फोटो मे मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है।